एक बहोत बड़ा मंदिर है जिसका मूर्ति गोल्डन कलर का मूर्ति है बना हुआ है ।

एक लेफ्ट साइड गोरा बैठा है गुंम्बद की तरह बना हुआ है सामने की ओर--

ये एक सामने बहुत बड़ा पहाड़ है पहाड़ के सामने बीच में एक रास्ता है रास्ता में --

घने हुए बादल है छोटे-छोटे बादल है ।

एंड वाइट कलर के सीमेंट से घेरा गया है सीमेंट की दीवार से वाइट एंड ब्लू कलर का वो किया गया है।

ये एक मंदिल हैं जिसके ऊपर टीना का छज से किया गया है घेरा गया है।

और सामने ग्रिल का गेट है ब्लैक कलर का है बहोत सारे बहोत बड़ा बोर्ड है।

पीछे पोस्टर भी है ।

एक घास एक गाछ है बहोत बड़ा घा सामने की ओर घास फूस है बहोत सारी पानी है निकल रही है कलरफुल लाइट है ।

यहाँ नीचे बहुत कलरफुल मार्बल्स है लगे हुए है सामने की ओर गेट में --

राइट साइड में एक आदमी है जो कटोरा लेके खड़ा है जिसका अंगूठा नजर आ रहा है ।

किनारे मछली है जिन्दा है चल रहा है।

ये एक टेबल है जिसमें बैठने के लिए बनाया गया है एंड बहोत सारी डिजाईन किया गया है इस टेबल मे।

इसमें हाथ के साइड एक बनाया गया है।

खड़े पोल है और बहोत सारे अ र राईट साइड में पानी है नदी है।

चस्मा पहना हुआ है एंड ऊपर की ओर बल्ब है एक उनके ऊपर जस्ट एक ऊपर बल्ब है जो जल रहा है एंड --

छोटे - छोटे कुछ लिखे हुए है लेफ्ट साइड के खिड़की है जो ग्रिल का खिड़की है कांच का --

ए बहोत सारे बालकनी है बालकनी में बहोत सारे ए_सी भी लगे है ऊपर की ओर--

और बहुत सारे कांच ब्रिज है एंड राईट साइड में एक घो खड़ा होने के लिए गोल गुम्बज की तरह बनाया गया है आदमी लोग के लिए--

एंड ये बहुत सी खड़े से पत्थर का बना हुआ है एंड दो ख--

एंड ऊपर में लिखा गया है हमर सबरदा--

एंड बहुत सारे तार है लोहा का तार है एंड राईट साइड में बहुत सारा बैलून है ब्लू है वाइट है एंड --

डाकघर है जिसमे बहोत सारे बाइक लगे हुए है राईट साइड एक अपाचे में--

हेलमेट टंगा हुआ है एक आदमी अंदर की ओर जा रहा है रेड कलर का स्वेटर पहना हुआ है बाइक लिया हुआ है चला के जा रहा है नीम का काँच है राईट साइड में --

बहोत बड़ा नेम दिखाई दे रहा है नेम का कांच में कलर किया हुआ है रेड एंड राईट में--

ये एक वाटर फॉल है जिसमें बोहत सारे पानी नीचे की ओर गिर रहा है डैम हैं जो--

मशीन सा रखा हुआ है एक बाइक रखा हुआ है जिसमें ऊपर कपडा टंगा हुआ है राईट साइड में एक गेट खुला हुआ है शीशा का गेट है।

ये जो दूकान है कॉफ़ी का उनमें कॉफ़ी टी कोई दूकान है जिसमें बहोत सारे --

एंड लकड़ी का दुकान है ये दूकान के नि --

लोहा से घेरा गया है जैसे लोहा में बोहत सारे वो रेड रंग के फूल है।

एंड कुर्सी के जस्ट पीछे बोहोत सारे बैट रखे है डेस्को में बोहोत सारी किताब कॉपी --

--एंड बहोत सारे छोटे छोटे गान्छे है जिसमें फायर एक आदमी है जो सब--